यहां पर एक उस्कूल गाजीपुर का दिखाई दे रहा है जिस --

जिसका मेन गेट दिखाई दे रहा है उस --

ये दिखाई दे रही है| नरदा जी के दूर जाकर --

अ ] यहां पर एक घड़ी भी ऊपर दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बोहत सारे लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जलती हुई लाइट दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बिल्डिंग में एक दुकान लगी हुई है दुकान के सामने एक गाय खड़ी हुई है और इस साइड एक और दुकान लगी हुई है और दो गाय खड़ी हुई हैं रोड पर बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बाजू में एक सेटर दिखाई दे रहा --

रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं। समान रखा हुआ स्टील के बर्तो में दिखाई दे रहा है। झूमर लगे हुए दिखाई दे --

यहाँ पे टेबल के उम्म्म अजु बाजु टेबलें लगी हुई दिखाई दे रही हैं बलून्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कैमरे दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी और दिखायी दे रहा है --

यहाँ पर एक बड़ा बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है। यह एक स्टेशन है जहां पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक टेंट लगा गया है --

टेंट लगा हुआ है बोहोत बड़ा टेंट में बोहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है और आधी चेयर खली हुई दिखाई दे रही कुछ --